ये यहां पे आप देख सकते हो ये मुकेश जनरल स्टोर लिखा हुआ है और यहां पे ऑटो दिख रहा है और यहां पे --

देख सकते हो ये आसमान देख रहा है और यहां पे बहोत सारे--

पेड़ वगैरह भी लगे हुए हैं ये यहां पे।

ये यहां पे आप देख सकते हो ये मंडप सजा हुआ है और यहां पे ये संत्री और नहीं ये--

और यहां पे हरियाली ही हरियाली दिख रही है आसमान दिख रहा है।

पेड़ी वगैरा दिख रही हैं लाइट दिख रही हैं और यहां पे एक आदमी भी दिख रहा है।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

और यहां पे बहुत सारी मछलियां देख रही है मछलियां छोटी भी है और मछलियां बड़ी भी--

और यहां पे आप देख सकते हो--

और यहाँ पे ये बहोत सारे--

मिट्टी सी देख रही हैं और यहां पे--

शुक्रिया कर रहा है ये यहां पे--